ये चित्र मा हमते एक बड़ू मंदिर दिख्येणु जे कु रंग लाल छ मंदिरम हमते एक त्रिशूल छ दिख्येणु और भित्तर एक मूर्ति भी छ दिख्येणी।